और एक और बाइक खड़ी हुई है यहां पे--

अलग अलग प्लेट में अलग अलग खाना रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

लोग हैं बहोत बड़ी जगह है जहां लोग नाच रहे हैं गा--

ये एक बहोत झरना है जहां--

टोपी पहने हैं और बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही--

जो बहोत बड़ा है। सामने एक--

यहां पर बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

सिंक भी है हाथ धोने वाला--

थोड़ा सा आंगे एक और गाड़ी खड़ी हुई है टू व्हीलर जिसका कलर ब्लैक है।

ये एक पेट्रोल पंप है यहां पे एक स्कूटी खड़ी हुई है।

एक मोटरसाइकिल सामने खड़ी है।

जहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है अलग अलग पैकेट में--

ये एक बहोत बड़ी झील है।

उसके पीछे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ हैं।

यहां पर से एक फोर व्हीलर जा सकती है साइड मे बहोत बहोत बड़े मैदान है।

पहाड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा हैं।

बादल सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी ऊपर लाइट --

और यहां बहुत सारी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो देखने में बहुत--